यहाॅॅं पर एक एच.डी.एफ. बैंक्स दिखाई दे रही है। बहोत बड़ी बैंक है।

ये कोफी हाउस का अं कोफी हाउस का फोटो है| जहाॅं पर एक भईया काफी सर्व कर रहे हैं और एक माइक्रोवेव रखा है। यहाॅं पे --

ये एक डांस एकेडमी है यहा पे छोटे बच्चों को डांस सिखाया जाता है।

यहां मार्केट है यहा पर सामने के तरफ राजेश्वरी कर के--

यहां पर कुछ प्राथना वगैरहा हो रही है या फिर शादी हो रही है कुछ लोग वाइट कपड़ों में है कुछ लेडिसे भी है वाइट कपड़ों में।

यहाँ पे एक दिवार पर डेकोरेट करने वाली चीज़े रखी हुई है।

बॉक्स जैसा रखा हुआ है गोल्डन कलर का उसमें कांच लगा --

अंदर कुछ दिखाई दे रहे है और बाहर के तरफ उसमें ताला डले हुए हैं और अंदर इसमें कुछ लगे हुए है चिपके हुए है।